अ बाटा किनारा एक गाड बैण लगीं जफणु कुछ बड़ा बड़ा डुंगान पड्यां पार फणु हम ते एक गों दिखेण लग्युं जफणा हम ते बहोत सारा कुड़ा छन दिखेण लग्यां।

ये चित्र में हमते एक बड़ी जगह दिखेण लगीं जो दिख्येण से ये होटल छै लगण लग्युं जैका बित्तर हमते बहौत सारी कुर्सी मेजन दिख्येण लगीं।

ये चित्र मा हम ते एक जगह दिखेण लगीं जु दिखेण से एक होटल छ लगण लग्युं जैका भितर हम ते कुछ कुर्सी आर मेजन दिखेण लगीं।

ये चित्र मा हम ते एक बड़ी झील दिखेण लगीं जैका उंडे फणा हम ते कुछ डुंगा दिखेण लग्यां पार फणा हम ते बड़ा बड़ा पहाड़न दिखेण लग्यां।

ये चित्र मा हमथे एक जगा दिखेण लगीं जखा मा हमथे कुछ कूड़ान दिख्येण लग्यां जूम बटी एक कूड़ा का एैंच गाजानाथ छ लिख्युं।

ये चित्र मा हम त एक बड़ू मैदान छ दिखेण लग्युं जो बिटिन बहोत सारा नौनियाल छन दिखेण लग्यां जून अपड़ी हाथ गर्दन पैंथर छन रख्यां। भ्वां पर कुछ थैला छन बिछायां। दिखेण से लगदु ये योग छन कन लग्यां।

ऐंच फणि कुछ बड़ी बड़ी खिड़की दिखेण लगीं यफणा कुछ चिड़ियां दिखेण लगीं जफणा कुछ लोग छन जाण लग्यां।

जफणी ओर पोर हम ते फूलों की डाली भी दिखेण छ लगीं।

जै पर कुछ लिख्युं छा जै पर हैप्पी टीचरस डे छ लिख्युं वफणा कुछ और भी नौ छन लिख्यां यखम हम ते एक नौनियाल कु हाथ भी दिखेण छ लग्युं।

यमणि कुछ मैडम भी दिखेण लगीं जु कुर्सियों मा छन बैठीं अगाड़ी फणे हम ते बड़ी बड़ी इमारत दिखेण लगीं जफणा कुछ छप्पर भी लग्यां वफणा बड़ा बड़ा बोर्ड लग्यां अगाड़ी पिछाड़ी हम ते कुछ बड़ा बड़ा डाला पार हम ते एक बड़ु पहाड़ दिखेण लग्युं।

जु लाल रंग का चांट पार फणा हमथे बड़ा-बड़ा पहाड़ छन दिखेण लग्यां जबणा हमथे बहोत बडू-बड़ा डाला अन दिखेण लग्यां उबरी हमथे एक बड़ी ईमारत भी दिखेण लग --

ये चित्र मा हमें एक बड़ी जगह दिखेण लगीं जखा हम ते बड़ी बड़ी इमारतन दिखेण लगीं।

ये चित्र मा हमते एक बड़ी जगह दिखेण लगीं इखम बिचम हमते एक गार्ड दिखेण लगीं जेका किनारा पण बड़ा-बड़ा ढुंगा असान पड़ियां।